और नीचे की तरफ एक बड़ा जनलेटर अ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है साइलेंट जनलेटर .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

यह कोई घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की तरफ कुछ घासे भी जमी हुई दिखाई दे रही --

आईडिया एयरटेल और कई बोर्ड लगे हुए हैं।

और कई लाइट के पोल गड़े हुए दिखाई दे र --

और बगल में एक सिलिंडर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पानी में कुछ घास जमी हुई बड़े-बड़े पत्ती जैसे घास दिख रही है।

और उ कुछ कुल्हड़ रखे हुए सामने दिखा रहे है और फ़ोन पे का स्कैनर और एक --